टेबल के सामने पे कॉपीस वगैरा पड़ी हुई है हाथ में पेंसिल यह कुछ लिख रहे हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है यहां पर बहुत ज्यादा लोग खाना वगैरा खाने के लिए आए हैं ये सामने एक आदमी बैठा है जिसने अपने आगे ।

यह एक क्लासरूम है यहां पर बहुत ज्यादा बेंचेस पड़े हुए हैं लेकिन लास्ट पर।

ये एक खुला मैदान है जिसके अंदर एक गोल कलर गोल वाइट कलर का सर्किल बनाया गया है जिसके अंदर।

मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ वाटर पूल में जाकर नहाते हैं नहाकर बहुत ज्यादा इन्जॉय मस्ती करके दोबारा अपने घर वापस चले जाते हैं।

कहीं पर जा रहे हैं कश्ती में ये कुछ लोग रस्सियां बांध रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग खाना बना रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

बहुत ज्यादा रोशन की गई है इसमें लाइट लाइट बहुत ज्यादा लगाई गई है और ये जगमग कर रही है ।

अ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लोग कुछ इधर कुछ उधर सब लोग खड़े हैं।

और अह सीढ़ियों के रास्ते में दो अह ड्रम पड़े हुए हैं जिसमें पीने के लिए पानी है।

यहाँ बहुत पुराने पुराने पहाड़ हैं यह भी कोई ईटों से बनाया गया हैं यहाँ पर।

ये एक खेत है यहां पर बड़े-बड़े दरख्त हैं और एक दरख्त के ऊपर से सारे पत्ते जुड़े हुए हैं और बाकी सब हरे।

हरे भरे पास में छोटे छोटे भी हैं घास इस पर उगी हुई है।

फ़िलहाल तीन लोग खड़े हैं एक जो वो शॉप से बाहर आ रहा हैं और दो शॉप के सामने खड़े उसको देख रहे हैं।

वो औरत बेंच के पास खड़ी है यहां पर गैस गैस का सिलेंडर सामने दीवार पर लटका हुआ है।

पराठा है इसके साथ हरि चटनी और केचअप भी पड़ी हुई है ये ब्लैक कलर की प्लेट है।

और साइड में एक आदमी खड़ा है जिसने कैप पहनी हुई है रेड कलर की शर्ट भी पहनी हुई है और साथ में हमारे देश का झंडा पड़ा हुआ है।

और इसने ब्लू कलर की शर्ट पहरी और पीछे भी इसके एक आदमी खड़ा है।

सेटिंग वगैरह कर रहा है जिसकी बाइक का कलर ब्लू है और इसके ऊपर ब्लैक सीट है।

ये सामने घर है जिसका गेट का कलर ब्ल्यू कलर का है और इसके सामने दो लड़के बैठे हुए है और।